और इस के फैक्ट्री का जो कमरा है इसमें बड़ा सा एक हॉल है।

जो कि ट्रेडीशनल रियर टाइप के ड्रेस पहने हुए हैं।

यह तस्वीर में दो तीन गाड़ी दिखाई दे रही है जिसमें से दो कार है और एक ऑटो है।

और उसके नीचे मे क्लीनर ड्रायर और डानर लिखा हुआ है।

इसके छत वाला जो पोर्शन है इसपे बहुत सारे लाइटे लगी हुई हैं।